यहां कुछ बच्चे और आदमी भी है।

और दीवार पर पंखा भी लगा है कुछ लाइट भी लगे हैं।

यहां पे बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है।

जिनका रंग व्हाइट व ब्लैक है।

लोग फूल तोड़ रहे हैं और कुछ औरतें हैं।

ये एक जिम सेंटर है।

में कुछ मशीनें रखी है।

और शटर भी लगे हैं यहां एक रिक्शा खड़ी है।

और ऊपर एक नीला बोर्ड है।

ये एक जंगल है इसमें छोटी छोटी घास खड़ी है।

और यहां कुछ चेयर भी पड़ी है। एक स्टूल है।

ये एक बहुत बड़ा हाल बना है।

और आसपास कुछ हरी भरी घास है।

ये एक बहुत बड़ा हाल है इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

यह एक बोहोत बड़ा हॉल है।

और स्टेज के ऊपर कुछ फूलों की माला टंगी है।

और कुछ पर्दे भी लगे हैं और कुछ लाइट भी लगी है।

यह एक रूम है इसमें कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं।

ये एक बस स्टैंड है।

और कुछ लेडिस भी खड़ी हुई है।

आस पास कुछ हरे भरे पेड़ भी हैं।

और दीवार पर कुछ चित्र उतरी हुई है।

और यहां कुछ कुर्सी भी पड़ी है और कुछ लाइट लगी है।

और उनके बीच में एक मेज भी पड़ी है।

में कुछ डिजाइन उत्री है और उसके पीछे भी कुछ डिजाइन है।

और एक सोफा भी पड़ा हुआ है और कुछ लाइट भी लगी है।

कुछ सामान शीशे के अंदर रखा है।

ये एक बहोत बड़ा विद्यालय है।

यहां कुछ आदमी है और कुछ लेडीज भी है आसपास कुछ पेड़ हैं।

ये एक कॉलेज है। इसमें कुछ बैनर भी लगे हैं।

और शीशे का गेट लगा है।

यह एक जिम सेंटर है जिसमें बहोत सारी मशीने रखी हुई हैं।